यहां पास आप दर्शन करने आराम से जा सकते हैं अपने साधन से गाड़ी से--

पीटेंट का इंतजार कर रहे हैं और जाया जाएगा अपनी जगह पर--

पे एक गाड़ी का शोरूम है जिसमें लिखा हुआ है शुभ मोटा गेराज यहां पास--

और ये नाइट का टाइम पे है और नीचे एक ए_टी_एम है जिसमें दो लोग हैं ए_टी_एम में पैसे निकाल रहे हैं और आजू बाजू गाड़ी और कार खड़ी हुई है।

और अंदर काम चलता यहां पास आजू बाजू ट्रक भी खड़े हुए हैं वर्कर्स है नहीं अभी और साथ साथ देख सकते हो कि--

देख सकते हैं ये बहोत अच्छा पैलेस है बहोत बड़ी बिल्डिंग भी है और यहां पास पीछे कई सारी खिड़की भी है नीचे एक गार्ड खड़ा हुआ है।

च ब बट यहां पास घूमने के लिए बहोत ही अच्छा है।

जाने के लिए सब लोग अ बस तो बहोत भीड़ है जो एक इंसान बाजू से सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है।

ब्राउन कलर की टी शर्ट पेहने हुए है जिसमें उसने गले पे माला पेहने--

और कुछ बाहर बच्चे बैठे हुए हैं जो बाल कटवाने के लिए रेडी हैं और बाजू से एक--

जो पीछे बैकग्राउंड पे देख सकते हो पेड़ लगा हुआ है बहुत ही अच्छा घना वना जंगल है।

बहुत ही अच्छे से एंज्वाय कर रहे हैं और जो देख सकते हो पानी गिर रहा है बहुत ही अच्छा लोकेशन है यहां पर से घूमने जा सकते हो आप।

देख सकते है एक होंडा एजेंसी है अंदर एक कार रखी हुई है।

अर होंडा एजेंसी का कार का दरवाजा खुला हुआ है।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

और साथ ही फोटोग्राफी का भी काम होता है ऑनलाइन विडियोग्राफी सभी प्रकार के काम होते है और शटर खुली हुई है।

और यहां पर से सीमेंट विमेंट काम होता है साथ ही आज बाजू कुछ दीवाले जो छोटी छोटी सी उठी हुई हैं--

देख सकते हैं की रोड भी है जो बहोत दूर तक बनी हुईं हैं और खाली है इस टाइम पे अभी रोड वर्कर्स हैं नहीं।

और बाजू से शैंपू वेंपू भी रखे है हेयर स्टाइल करने के लिए बाजू से एक बोर्ड गये जिसमें से--

और यहां पर कुछ आंटी अंकल है जो अपने अपने काम से जा रहे हैं कुछ कुछ रिक्शा भी हैं बाहर रखे हुए हैं।

कुछ दरवाजे हैं बाजू से रोड है कोई गाड़ी साधन वाधन नहीं खड़े हुए हैं और ऊपर देख सकते हो तार आ रहा है।

है ना बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है अंदर देख सकते हो लाइटिंग की भी अच्छे से फिटिंग की गई है और कुछ अंकल आंटी भी हैं जो अंदर जा के ज्वैलर्स ले रहे हैं ज्वेलर ले रहे हैं।

देख सकते हो ये एक मोबाइल की दुकान है एक लैपटॉप रखा है बाजू से--